ये एक दुकान सी नजर आ रही है। दुकान के सामने कुछ एक गेट सा लगा हुआ है।

बहोत अच्छे दिख रहे हैं और सामने गेट के एक बंदा खड़े हुआ है --

और उसमे सब कुछ दुकान में मिलता है पेंसिल कॉपी भी चाय कुछ लड्डू वगरेह भी लट्टू भी मिल रहे हैं।